हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

कुर्सी पड़ी हुई है मेज पड़ी हुई है और मेज पर बोतलें रखी हुई हैं गिलास --

और ओ यहाँ पर जालीदार लगा हुआ है खड़की --

और भट्टे के अंदर जाने के लिए हॉल भी है।

तार भी रखा हुआ है।

काउंटर भी बने हुए हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ है कुर्सियों का --

जिस पेएएए बोर्ड लगा हुआ है पी_एस सन पावर --

यहां पर देख पा रहे हैं यह एक ऑफिस है।

हम यहां पर देख पा रहे हैं यह एक दुकान है जहां पर रस्सी--

यहां पर लोग झूला झूल रहे हैं झूले में बैठे हुए हैं।

जिसमें से पानी निकल रहा है जिससे सिंचाई हो रही है।

हम यहाँ पर देख रहे हैं एक दुकान है बारबर की --

और एक गाड़ी का लोगो भी बना हुआ है यहाँ पर--

और अ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं बीच में एक इस्टूल भी पड़ा हुआ है।

और एक भी सामने बनी हुई है।

और लाइटें जल रही हैं एक दो तीन चार पांच छः सा--

सर इसमें हमको दिख रहा है एक व्यक्ति बैठा हुआ है बाल कटा रहा है।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दो चार्जर लगे हुए हैं ।

जिस पर बिजली का तार लगा हुआ है।

और एक दूरी पट्टी इनका मकान बना हुआ है पेंड़ लगे हुए हैं।

जोकि दुकान है और एक टंकी रखी हुई है पानी के पीछे।

और बहुत सारे जैकेटें रखी कपड़े रखे हुए हैं और चार सी_ सी_ टी_ वी_ कैमरे लगे हुए हैं।

हमें यहाँ पर दिख रहा है एक बड़ा सा हॉल --

और यहाँ पर चप्पल जूते की दुकान भी है।

हम देख पा रहे हैं एक बाइक खड़ी हुई है जिसका सीसा दिख रहा है।

और एक ब्रिज बने हुए है इधर से जाने के लिए --

और शायद यह फूल की दुकान है एक बाल्टी भी रखी हुई है।

और पर्ली की ऊपर से ताने हुए हैं।

देख पा रहे हैं यह एक पार्क है।

एक दुकान है यहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी है एक --

और एक रुमाल लाल रंग का है।